बिल्डींग के बाहर एक गेट है गेट के बाहर एक आदमी खडा हुआ बाईक खडी हुई है आदमी बॅग रखा है हेल्मेट पहना है चौकीदार खडा हुआ है बिल्डींग के अंदर कुछ कार भी दिखाई--

तस्वीर में खुला असमान दिखाई दे रहा है और एक खंडहर कि जगह भी दिखाई दे रही है।

बड़ा सा कुंदा दिखाई दे रहा है जाली लगा हुआ है एक लाल कलर की लकड़ी भी लगी हुई है।